एक बड़ा-सा व्हाइट कलर का एक लैंप लगा हुआ है बड़े-बड़े बहुत आलीशान पेड़ हैं अ क्यारियां बनाई गई हैं।

आ बांस के सपोर्ट से खड़ा हुआ है सब लोग इस हाथी को नहला रहा है इसके सूंड़ के ऊपर कुछ रेड कलर के ---

सड़क बनी हुई है। धूप बहुत तेज़ निकल रही है। सामने की तरफ से एक अ बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज के ऊपर बोहोत सारे पोस्टर लगे हुए है।

यह पीछे के तरफ एक बड़ी सी खिड़की है जहां से रोशनी आ रही है दीवारों के ऊपर सफेद और लाल कलर का रंग किया।